और ग्राउंड में बहुत गंद की है साइड में बिल्डिंग है चार-पांच मंजिल की वाइट ब्लू येलो --

नर्सरी का बोर्ड साइड में लगा हुआ है पीले कलर का और ये बिल्डिंग जो है--

आस्था के लिए आए हैं और यहां पर बहुत सारे लोग हैं एक लड़का खड़ा है।

वाइट कलर की पेंट पहनी है बच्चे ने कलरफुल स--

ये रोड के साइड का व्यू है रोड के साइड में एक दीवार है जिस जो --

ग्रोसरी स्टोर का सामान दिखाया रखा है यहां पर इसमें बहुत कुछ है।

जर्सी कीन पहनकर और ब्लू कलर की पेंट पहनकर वाइट कलर के शॉक्स पहनकर और एक चश्मा लगा कर--

और सामने एक लड़की और एक लड़का बैठा है जो लड़का फोन पे बात कर रहा है।

योगा की जा रही है एक लड़की योगा कर रही है उसके साइड में एक लड़का योगा कर रहा है लड़की ने ब्लैक कलर की शर्ट और--

एक बाइक खड़ी है जो रिपेयर होने के लिए आई है उसका टायर निकला हुआ है।

रेस्टोरेंट का व्यू है जहां पर--

पुल के नीचे तीन शीट बिजी हुई है यहां सामने दरवाजा है।

और एक ही पार्क है जहां पर कुछ लोग घूम रहे हैं।

और यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो एक रेड कलर की बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं।

और चर्च के ऊपर ब्लू वाइट और पिंक कलर के गुबारों से सजावट की गई है और एक स्टार टांगा गया है।

गेट खुला हुआ है भीड़ उसमें भी पार हुई हुई है और--

एक्सपर्ट प्रोफेशनल सलून और नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं।

वाटर पार्क का एंट्रेंस का व्यू है यहां पर वाटर पार्क लिखा हुआ है पीले कलर --

बैनर टंगा हुआ है जिसमें अंदर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है।